ये शाम का टाइम है शाम में सारे भ्रमण कर रहे हैं यहां पे नदी पे।

बहुत सुंदर दिख रहे हैं और कुछ बैनर लिए हुए हैं।

और यहां पे भेज एंड नॉन भेज रेस्टोरेंट बोल के भी लिखा है यहां पे भेज भी मिलता है।

एक ठो डांस स्टेज है यहां पे एक औरत डांस कर रही है माथे पे हल्दी लगाई हुई है।

सारा चीज मिलता है ये ढाबा का खाना बहोत टेस्टी है सारे लोग बोलते हैं।

ये एक ठो सुंदर सा पार्क है गांधी जैसे लग रहा हैं।

और ऊपर ओनिडा वाला बी_पी_एल कुछ ऐसा लिखा हुआ है।

और नीचे जो है घास ग्रीन में और जो पड़ रहा है उसका बहोत सुंदर लग रहा है।

एक सुंदर सा दुकान है जहां लिखा डी_के एंब्रो

जैसे कुछ ई सॉल्यूशन स्टेशनरी ऐसा कुछ लिखा हुआ है।

ये एक थो चर्च है सारे औरत लोग व्हाइट साड़ी पहेन के कुछ मुंडी पे लगाए हैं स्टॉल वगैरा।